सामने की तरफ सफेद कलर की बोर्ड पर टीचर कुछ लिख रहे है। एक टेबल और कुर्सी लगी हुई नजर आ रही हैं।

इमेज में एक घर बना हुआ है। घर के बाहर सीढी लगी हुई है और खिड़की दरवाजे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक बड़ा फ्रिज रखा है। लाइट्स जल रही हैं। बाहर बोर्ड पर हेवन बेकरी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

लगी हुई नजर आ रही है। कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं। अं पेड़ लगे हुए हैं। सूर्य उदय होते हुए नजर आ रहा है।

पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं। पीछे की तरफ दीवार पर एक बैनर लगा हुआ है।

इमेज में कुछ दुकाने दिख रही हैं। रोड पर दो बुक के स्टॉल लगे हुए हैं। बहोत सारी बुक र --

की हुई दिख रही हैं। अं दो जेंट्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अं कुछ बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।